चित्र में दिखाई दे रहा है और ये एक रोड का चित्र है और अगल बगल में बहुत सारे खेत भी है जो हरे भरे हैं।

इस चित्र में दिखाई दे रहा है और यहाँं पे हर प्रकार के तो --

इस चित्र में दिखाई दे रहा है और यह एक जिम की दुकान है और जिम कैफे है और जिम हेल्थ है।

जैसा कि इस चित्र में दिखाया जा रहा हैं यह किसी बुक स्टॉल का चित्रण हैं। जिसके बाहर कई ढ़ेर सारी मैगज़ीन --

और पोस्टर्स लगे हुए हैं और इस स्टाल पर एक व्यक्ति कस्टमर और अंदर एक महिला दुकानदार भी खड़ी हुई है। इस दुकान का नाम तेजा बुक स्टाल --

इस चित्र में दिखाई दे रहा है और यह एक --

ये योगा भी कर रहे हैं वह देखने में --